यह देखो कितने सारे --

देखो ये जो फोटो है ये --

इस पर जो काफी पत्थर घेरा जाता है ताकि --

देखो लड़कियां किस तरीके से रंग को --

केक काफी बड़ा है देखो कितना--